और कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है टी यू आर एन आई ।

और एक बोर्ड है और एक लंबा खंबा है और एक छोटा खंबा है जिस पर लाइट और आपका स्वागत ऐसे कुछ लिखा हुआ है रिलायंस जिओ। कुछ ईंटे भी पड़ी हुई हैं।

और काले पत्थर जैसा नीचे कुछ बिछाया गया है।

दो व्यक्ति अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं एक व्यक्ति उनके पास खडा है।

और इसके पीछे आसमान साफ नजर आ रहा है।